मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज आपसे मन की बात एक ऐसे समय कर रहा हूँ जब कोरोना हम सभी के धैर्य हम सभी के दुःख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है
बहुत से अपने हमें असमय छोड़ कर चले गए हैं
कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौंसले से भरा हुआ था आत्मविश्वास से भरा हुआ था लेकिन इस तूफ़ान ने देश को झकझोर दिया है
साथियो बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलगअलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट के साथ विशेषज्ञों के साथ लम्बी चर्चा हुई है
हमारी फरमा इंडस्ट्री के लोग हों वैक्सीन मैन्यूफैक्चर्स हों आक्सीजेन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं
इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है
राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है
राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं
साथियो कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं
पिछले एक साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं
हमारे साथ इस समय मुम्बई से प्रसिद्द डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं
डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है वो इंडियन कॉलेज ओएफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं
आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से
नमस्कार डॉ० शशांक जी
नमस्कार सर
अभी कुछ दिन पहले ही आपसे बात करने का अवसर मिला था
आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी
मुझे लगा देश के सभी नागरिको को आपके विचार जानने चाहिए
जो बातें सुनने में आती उसकी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूँ
डॉ० शशांक आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं
मेडिकली ये कैसे अलग है और क्याक्या सावधानी जरूरी है
धन्यवाद सर ये जो दूसरी बाढ़ वेव आई है
ये तेजी से आई है तो जितनी पहली बाढ़ वेव थी उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है लेकिन अच्छी बात ये है कि उससे ज्यादा रफ़्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफी कम हैं
इसमें दो तीन फर्क है पहली तो ये युवाओं में और बच्चो में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है
उसके जो लक्षण है पहले जैसे लक्षण थे साँस चढ़ना सूखा खाँसी आना बुखार आना ये तो सब है ही और उसके साथ थोड़ा गंध जाना स्वाद चला जाना ये भी है
और लोग थोड़े भयभीत हुए हैं
भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है
8090 प्रतिशत लोगों में इसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं ये म्यूटेशनम्यूटेशन जो बोलते हैं घबराने की बात नहीं है
ये म्यूटेशन होते रहते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है और इसलिए बिलकुल डरने की बात नहीं है और ये वेव को हम पार कर देंगे
वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है तो यही अलगअलग लक्षण है और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए
एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है इसमें वैद्य डॉक्टर की सलाह लेना चाहिये
डॉ० शशांक मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे कई चिट्ठियाँ मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंकाए हैं कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरुर बताएँ
हां सर क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जायेंगी ये भरोसे पर रहते हैं और मोबाईल पर आने वाली बातों पर भरोसा रखते हैं और अगर सरकारी दी गयी सूचना का पालन करें तो ये कठनाई का सामना नहीं आता है
तो कोविड में क्लिनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें तीन प्रकार की तीव्रता है हल्का या माइल्ड कोविड मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सेवेरे कोविड बोलते हैं इसके लिए है
तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम आक्सीजेन का मॉनिटरिंग करते हैं पल्स का मॉनिटरिंग करते है बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं बुखार बढ़ जाता है तो कभीकभी पैरासिटामॉल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिये जो मॉडरेट कोविड होता है मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्य के अपने डॉक्टर के साथ सम्पर्क करना बहुत जरूरी है
सही और सस्ती दवाईया अवेलेबल है
इसमें स्टीरॉइड्स जो है ये जान बचा सकती है जो इनहेलर्स दे सकते हैं टेबलेट हम और दे सकते हैं हम और उसके साथ ही प्राणवायु जो आक्सीजेन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटेछोटे इलाज़ है लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर
ये दवाई से एक चीज़ जरुर होती है कि अस्पताल में दोतीन दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है
ये भी दवाई कब काम करती है जब पहले 910 दिन में दी जाती है और ये पाँच ही दिन देनी पड़ती है तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे ये बिलकुल दौड़ना नहीं चाहिए
ये दवाई का थोडा काम है जिनको आक्सीजेन लगता है प्राण वायु आक्सीजेन लगता है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते हैं तभी लेना चाहिए
तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना
हम प्राणायाम करेंगे हमारे शरीर के जो लंग्स हैं उसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगें और जो हमारी खून पतला करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हेपरिन बोलते हैं
ये छोटीछोटी दवाईया देंगे तो 98 लोग ठीक हो जाते हैं तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है
ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य की सलाह से लेना बहुत जरूरी है
और ये जो महंगीमहंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सिर अपने पास अच्छे इलाज चालू है प्राणवायु आक्सीजेन है वेंटीलेटर की भी सुविधा है सबकुछ है सर और कभीकभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगो में ही देनी चाहिए तो इसके लिए बहुत भ्रम फैला हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सिर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रते है
आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए अमेरिका वही से हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे है सर
डॉ० शशांक आपका बहुत बहुत धन्यवाद
डॉक्टर शशांक ने जो जानकारियाँ हमें दीं वो बहुत जरुरी हैं और हम सबके काम आएँगी
साथियो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो कोई और आशंका हो तो सही सोर्स से ही जानकारी लें
आपके जो फैमिली डॉक्टर हों आसपास के जो डॉक्टर्स हों आप उनसे फ़ोन से संपर्क करके सलाह लीजिये
मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं
कई डॉक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं
फ़ोन पर व्हाट्सएप पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं
कई हॉस्पिटल की वेबसाइटें हैं जहां जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं और वहां आप डॉक्टर्स से परामर्श भी ले सकते हैं
ये बहुत सराहनीय है
मेरे साथ श्रीनगर से डॉक्टर नावीद नजीर शाह जुड़ रहे हैं
डॉक्टर नावीद श्रीनगर के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं
नावीद जी अपनी देखरेख में अनेकों कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और रमजान के इस पवित्र माह में डॉ नावीद अपना कार्य भी निभा रहे हैं और उन्होंने हमसे बातचीत के लिए समय भी निकाला है
आइये उन्हीं से बात करते हैं
नावीद जी नमस्कार
नमस्कार सर
डॉक्टर नावीद मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है
आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगें
देखिए जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डेजिग्नेट हुआ एएस कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सिटी हॉस्पिटल था
जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है तो उस टाइम एक खौफ़ का माहौल था
लोगो में तो था ही वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो डेथ सेंटेंस माना जायेगा ये और ऐसे में हमारे हस्पताल में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे उनमें भी एक खौफ़ का माहौल था कि हम इन पेशेंट को कैसे फेस करेंगे हमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा तो नहीं है
लेकिन जो टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने एतिहादी तदवीर जो है उन पर अमल करें तो हम भी सफे रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है वो भी सफे रह सकता है और आगेआगे हम देखते गये मरीज या कुछ लोग बीमार थे जो एसिम्प्टोमेटिक जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे
हमने देखा करीब करीब 9095 से ज्यादा जो मरीज हैं वो विथआउट इन मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं तो वक्त जैसे गुजरता गया लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया
आज की बात जो ये सेकंड वेव जो इस टाइम हमारी आयी है इस कोरोना में इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है
इस मौके पर भी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है जो सॉप्स है अगर उन पर हम अमल करेंगें जैसे मास्क पहनना हैंड सैनिटाइजर का उसे करना उसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैथरिंग एवॉयड करे तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं
डॉ० नावीद वैक्सीन को लेकर भी लोगो के कई सारे सवाल है जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं आप कुछ बात इसमें बतायें श्रोताओं को बहुत लाभ होगा
जब हम कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास कोविड 19 के लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं एक तो प्रोटेक्टिव मजोर और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजाद दिला सकता है और हमारे मुल्क में दो वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड है जो यहीं पर बना हुआ वैक्सीन है
और कंपनीज भी जो अपनी ट्रायल्स की है तो उसमे भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60 से ज्यादा है और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारी उत में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है
हां सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकॉन्सेप्शन या मिथ्स हैं इसमें आये थे कि येये साइड इफेक्ट हैं अभी तक हमारे जो भी यहाँ पर वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है
सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है किसी को बुखार आना पूरे बदन में दर्द या लोकल सिते जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहा पर पैन होना ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं जो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट हमने नहीं देखा है
और हां दूसरी बात लोगो में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सिनेशन यानि वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गये इसमें कंपनीज से ही गाइडलाइन्स है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है
उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है
लेकिन जो बीमारी की सेवेरिटी है यानि बीमारी की सिद्दत्त जो है उन मरीज में उतनी नहीं होगी यानि की वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती इसलिए जो भी ये मिसकॉन्सेप्शन हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए और जिसजिस की बारी आयी क्योंकि 1 मई से हमारे पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र है उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा तो लोगों से अपील यही करेंगे आप आए वैक्सीन लगवाए और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और ओवरॉल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्यूनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जायगी कोविड 19 के इन्फेक्शन से
डॉ० नावीद आपका बहुतबहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुतबहुत शुभकामनाएँ
बहुत शुक्रिया
साथियो कोरोना के इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफ़वाह में न आयें
आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं
अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है
अब देश का कॉर्पोरेट सेक्टर कम्पनियाँ भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पायेगी
मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ़्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा
मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ़्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादासेज्यादा लोगों तक पहुँचाएँ
साथियो हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपनी अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है
ये सेवाभाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है
नर्सिंग स्टाफ द्वारा की जा रही सेवा और परिश्रम के बारे में सबसे अच्छे से तो कोई नर्स ही बता सकती है
इसलिए मैंने रायपुर के डॉक्टर बीआर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ दे रहीं सिस्टर भावना ध्रुव जी को मन की बात में आमंत्रित किया है वो अनेकों कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही हैं
आइये उन्हीं से बात करते हैं
नमस्कार भावना जी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार
भावना जी
येस सिर
मन की बात सुनने वालों को आप जरुर ये बताइए
कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियाँ इतने सारे यानी मल्टीटास्क और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं
कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरुर देशवासी सुनना चाहेंगे क्योंकि सिस्टर जो होती है नर्सेस जो होती हैं पेशेंट के सबसे निकट होती हैं और सबसे लम्बे समय तक होती हैं तो वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं जी बताइए
जी सर मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मोंथ का है सर
हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है
फिर 2 महीने बाद हमारी ये कोविड ड्यूटीज रिपीट होता है सर
जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी
ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया सब के सब डर गए घबरा गए मुझसे कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना एक इमोशनल सिचुएशन था सर
बीच में जब मेरी बेटी मुझसे पूछी मुम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गयी तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ कर गई और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर तो वो उनसे और ज्यादा घबराये हुए थे कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है हम आगे क्या करेंगे
हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्थी एनवायर्नमेंट दिए सर उन्हें
हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको प्पे किट पहनने के लिए कहा गया सर जो कि बहुत ही कठिन है प्पे किट को पहन करके ड्यूटी करना
सर ये बहुत टाउघ था हमारे लिए मैंने 2 मोंथ की ड्यूटी में हर जगह 1414 दिन ड्यूटी की वार्ड में आईसीयू में आइसोलेशन में सर
यानी कुल मिला कर तो आप एक साल से इसी काम को कर रही हैं
येस सिर वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कोलीग्स कौन है
हम एक टीम मेंबर की तरह काम किये सर उनका जो भी प्रोब्लेम थे उनको शेयर किये हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किये सर कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे
वो सारे सिम्पटम्स उनमें आते थे जब हम हिस्टोरी लेते थे उनसे लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे तो हम उनको समझाते थे और सर जब सेवेरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स अलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था तब उनको आईसीयू की जरुरत रहती थी तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी
तो ऐसा 12 केस हमनें देखा सर और ऐसा भी नहीं कि हर एक एजीई ग्रुप के साथ काम किया सर हमने
जिसमें छोटे बच्चे थे महिला पुरुष बुजुर्ग सारे तरह के पेशेंट थे सर
उन सबसे हमने बात करी तो सब ने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए सबका यही हमें अंस्वेर मिला सर
तो हम उनको समझाए सर कि डर कुछ नहीं होता है आप हमारा साथ दीजिये हम आपका साथ देंगे बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फोलो कीजिये बस हम इतना उनसे कर पाए सर
भावना जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके आपने काफी अच्छी जानकारियाँ दी हैं
अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं तो जरुर देशवासियों को इससे एक पॉजिटिविटी का मेसेज जाएगा
आपका बहुतबहुत धन्यवाद भावना जी
थांक यू सो मुच सिर थांक यू सो मुच जय हिन्द सर
जय हिन्द
भावना जी और नर्सिंग स्टाफ के आप जैसे हजारोंलाखों भाईबहन बखूबी अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं
ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है
आप अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान दीजिये
अपने परिवार का भी ध्यान रखिये
साथियो हमारे साथ इस समय बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई हैं
सुरेखा जी kसी
जनरल हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग आफिसर हैं
आइये उनके अनुभव भी जानते हैं
नमस्ते सुरेखा जी
आई एएम रियली प्राउड एंड होनर्ड सिर टो स्पीक टो प्राइम मिनिस्टर ओएफ और कंट्री
सुरेखा जी यू अलोंग विथ अल्ल फेलो नर्सेस एंड हॉस्पिटल स्टाफ एआरई डोइंग एक्सेलेंट वर्क
इंडिया इस थैंकफुल टो यू अल्ल व्हाट इस यूर मेसेज फोर थे सिटिजेंस इन थिस फाइट अगेंस्ट COVID19
येस सिर बेइंग आ रिस्पांसिबल सिटिजेन आई वाउल्ड रियली लाइक टो टेल सोमथिंग लाइक प्लीज बीई हम्बल टो यूर नीघबोर्स एंड अर्ली टेस्टिंग एंड प्रॉपर ट्रैकिंग हेल्प यूएस टो रिड्यूस थे मॉर्टेलिटी रते एंड मोरियोवर प्लीज आईएफ यू फाइंड एनी सिम्पटम्स आइसोलेट यूरसेल्फ एंड कंसल्ट नियरबाई डॉक्टर्स एंड गेट ट्रीटेड एएस अर्ली एएस पॉसिबल
सो कम्यूनिटी नीड टो नोव अवेयरनेस अबाउट थिस डिसीज एंड बीई पॉजिटिव donट बीई पैनिक एंड donट बीई स्ट्रेस्ड आउट
इत वर्सेंस थे कंडीशन ओएफ थे पेशेंट वे एआरई थैंकफुल टो और गवर्नमेंट प्राउड टो हेव आ वैक्सीन अलसो एंड आई एएम अलरेडी वैक्सिनेटेड विथ माय ओवन एक्सपीरियंस आई वांटेड टो टेल थे सिटिजेंस ओएफ इंडिया नो वैक्सीन प्रोवाइड्स 100 प्रोटेक्शन इमीडिएटली
इत टेक्स टाइम टो बिल्ड इम्यूनिटी
प्लीज donट बीई स्केयर्ड टो गेट वैक्सिनेटेड प्लीज वैक्सिनेट यूरसेल्फ थेरे इस आ मिनिमल साइड इफेक्ट्स एंड आई वांट टो डिलिवर थे मेसेज लाइक स्टे एटी होम स्टे हेल्थी एवॉयड कॉन्टैक्ट विथ थे पियोपल व्हो एआरई सिक एंड एवॉयड टचिंग थे नोज़ आईज़ एंड माउथ अनसेसरिली
प्लीज प्रैक्टिस फिजिकली डिस्टेंसिंग वियर मास्क प्रॉपरली वाश यूर हैंड्स रेग्युलरली एंड होम रेमेडीज यू कैन प्रैक्टिस इन थे हाउस
प्लीज ड्रिंक आयुर्वेदिक कढ़ा आयुर्वेदिक काढ़ा टेक स्टीम इनहेलेशन एंड माउथ गार्गलिंग एवरीडे एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज अलसो यू कैन डीओ इत एंड ओने मोरे थिंग लास्ट एंड नोट थे लीस्ट प्लीज हेव आ सिम्पैथी टॉवर्ड्स फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स
वे नीड यूर सपोर्ट एंड कोआपरेशन
वे विल फाइट टोगेथर
वे विल गेट थ्राउघ विथ थे पैंडेमिक
थिस इस व्हाट माय मेसेज टो थे पियोपल सिर
थांक यू सुरेखा जी
थांक यू सिर
सुरेखा जी वाकई आप बहुत कठिन समय में मोर्चा संभाले हुए हैं
आप अपना ध्यान रखिये आपके परिवार को भी मेरी बहुतबहुत शुभकामनायें हैं
मैं देश के लोगों से भी आग्रह करूँगा कि जैसा भावना जी सुरेखा जी ने अपने अनुभव से बताया है
कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा जरुरी है और देशवासियों को इसे बनाए रखना है
साथियो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथसाथ इस समय लैबटेक्निशियन्स और एम्बुलेंस ड्राइवर्स जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं
जब कोई एम्बुलेंस किसी मरीज तक पहुँचती हैं तो उन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर देवदूत जैसा ही लगता है
इन सबकी सेवाओं के बारे में इनके अनुभव के बारे में देश को जरुर जानना चाहिए
मेरे साथ अभी ऐसे ही एक सज्जन हैं श्रीमान प्रेम वर्मा जी जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है
प्रेम वर्मा जी अपने काम को अपने कर्तव्य को पूरे प्रेम और लगन से करते हैं
आइये उनसे बात करते हैं
नमस्ते प्रेम जी
प्रेम जी नमस्ते सर जी
प्रेम जी हाँ जी सर
आप अपने कार्य के बारे में
प्रेम जी हाँ जी
जरा विस्तार से बताइये
आपका जो अनुभव है वो भी बताइये
प्रेम जी मैं कैट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पर हूँ और जैसे ही कंट्रोल हमें एक तब पर कॉल देता है
102 से जो कॉल आती है हम मूव करते हैं पेशेंट के पास
हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास तो दो साल से हम कंटीन्यू कर रहे हैं ये काम
अपना किट पहन कर अपने ग्लोव्स मास्क पहन कर पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं जो भी हॉस्पिटल में हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं
आपको तो वैक्सीन की दोनों दोसे लग गई होंगी
प्रेम जी बिल्कुल सर
तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवायें
इसके लिए आपका क्या सन्देश है
प्रेम जी सर बिल्कुल
सभी को ये दोसे लगवाना चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी
अब मुझे मेरी मम्मी कहती हैं ये नौकरी छोड़ दो
मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ कर बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं
सब नौकरी छोड़छोड़ कर जा रहे हैं
मम्मी भी मुझे बोलती हैं कि बेटा वो नौकरी छोड़ दे
मैंने बोला नहीं मम्मी मैं नौकरी नहीं छोडूंगा
प्रेम जी माँ को दुखी मत करना
माँ को समझाना
प्रेम जी हाँ जी
लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई न
प्रेम जी हाँ जी
ये बहुत ही छूने वाली है
प्रेम जी हाँ जी
आपकी माता जी को भी
प्रेम जी हाँ जी
मेरा प्रणाम कहियेगा
प्रेम जी बिलकुल
और प्रेम जी मैं आपके माध्यम से
प्रेम जी हाँ जी
ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी
कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं
प्रेम जी हाँ जी
और हर एक की माँ क्या सोचती है
प्रेम जी बिलकुल सर
ये बात जब श्रोताओं तक पहुचेगी
मैं जरुर मानता हूँ कि उनको भी दिल को छू जाएगी
प्रेम जी हाँ जी
प्रेम जी बहुतबहुत धन्यवाद
आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं
प्रेम जी धन्यवाद सर जी
धन्यवाद भैया
प्रेम जी धन्यवाद
साथियो प्रेम वर्मा जी और इन जैसे हजारों लोग आज अपना जीवन दाव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं
कोरोना के खिलाफ़ इस लड़ाई में जितने भी जीवन बच रहे हैं उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है
प्रेम जी आपको और देशभर में आपके सभी साथियों को मैं बहुतबहुत साधुवाद देता हूँ
आप समय पर पहुँचते रहिये जीवन बचाते रहिये
मेरे प्यारे देशवासियो ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है
गुरुग्राम की प्रीती चतुर्वेदी जी ने भी हाल ही में कोरोना को हराया है
प्रीती जी मन की बात में हमारे साथ जुड़ रही हैं
उनके अनुभव हम सब के काफ़ी काम आयेंगें
प्रीति जी नमस्ते
नमस्ते सर
कैसे है आप
मैं ठीक हूँ जी
सबसे पहले तो मैं आपकी covid19 से
सफलतापूर्वक लड़ने के लिए
सराहना करूँगा
थांक यू सो मुच सिर
मेरी कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो
जी शुक्रिया सर
प्रीति जी
ये सिर्फ आपके पूरे वेव में आप ही का नंबर लगा है कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए है
प्रीति नहींनहीं सर मैं अकेली ही हुई थी
चलिये भगवान की कृपा रही
अच्छा मैं चाहूँगा
हाँजी सर
कि आप अपने इस पीड़ा की अवस्था के कुछ अनुभव अगर सांझा करें तो शायद जो श्रोता है उनको भी ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए इसका मार्गदर्शन मिलेगा
जी सर जरूर
सर इनिशियली स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जी मतलब बहुत सुस्तीसुस्ती आया और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी
तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मुझे लगा कि ये सिम्पटम्स है तो मैंने टेस्ट कराने के लिए टेस्ट कराया
दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे ही मुझे पॉजिटिव हुआ मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया
एक रूम में आइसोलेट करके डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे
उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी
तो आपका परिवार बच गया आपके क्विक एक्शन के कारण
वो बाकी सबका भी बाद में कराया था
बाकी सब नेगेटिव थे
मैं ही पॉजिटिव थी
उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अन्दर
अपनी जरुरत का सारा सामान रख कर उसको मैं अपने आप अन्दर कमरे में बंद हो गई थी
और उसके साथसाथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी
सर मैंने मेडिकेशन के साथसाथ ना मैंने योगा आयुर्वेदिक और मैं ये सब स्टार्ट किया और साथ में ना मैंने काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था
इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और सर मैं दिन में मतलब जब भी अपना भोजन लेती थी उसमे मैंने हेल्थी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया मैंने
मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया मैंने स्टीम लिया गार्गल किया और होट वाटर लिया
मैंने दिन भर में इन सब चीज़ों को ही अपने जीवन में लेती आई डेली
और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात में बोलना चाहूंगी घबराना तो बिलकुल नहीं है
बहुत मेंटली स्ट्रोंग करना है जिसके लिए मुझे योगा ने बहुत ज्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी अच्छा लगता था उसको करने से मुझे
अच्छा प्रीति जी जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया
आप संकट से बाहर निकल आई
अब आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है
तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए इसकी देखभाल के लिए अभी क्या कर रही हैं
सर मैंने एक तो योग बंद नहीं किया है
ठीक है मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्थी फूड खा रही हूँ अभी
जो कि मैं बहुत अपने आप को नेगलेक्ट कर लेती थी उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं
धन्यवाद प्रीति जी
थांक यू सो मुच सिर
आपने जो जानकारी दी मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आयेगी
आप स्वस्थ रहें आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें मेरी आपको बहुतबहुत शुभकामनायें
मेरे प्यारे देशवासियो जैसे आज हमारे मेडिकल फील्ड के लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स दिनरात सेवा कार्यों में लगे हैं
वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं हैं
देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है
इन दिनों मैं देख रहा हूँ कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुँचा रहा है कोई सब्जियाँ दूध फल आदि पहुँचा रहा है
कोई एम्बुलेंस की मुफ़्त सेवाएँ मरीजों को दे रहा है
देश के अलगअलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयं सेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं
इस बार गाँवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है
कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गाँव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थायें भी बनाई जा रही हैं
शहरों में भी कई नौजवान सामने आये हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं यानि एक तरफ देश दिनरात अस्पतालों वेंटीलेटर्स और दवाईयों के लिए काम कर रहा है तो दूसरी ओर देशवासी भी जीजान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहें हैं
ये भावना हमें कितनी ताकत देती है कितना विश्वास देती है
ये जो भी प्रयास हो रहे हैं समाज की बहुत बड़ी सेवा है
ये समाज की शक्ति बढ़ाते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो आज मन की बात की पूरी चर्चा को हमने कोरोना महामारी पर ही रखा क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस बीमारी को हराना
आज भगवान महावीर जयंती भी है
इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनायें देता हूँ
भगवान महावीर के सन्देश हमें तप और आत्म संयम की प्रेरणा देते हैं
अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है
आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है
गुरु तेगबहादुर जी का 400वाँ प्रकाश पर्व भी है
एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बोइशाक टैगोर जयंती का है
ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्यों को निभाने की
एक नागरिक के तौर पर हम अपने जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्यों को निभायेंगे
संकट से मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे
इसी कामना के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि वैक्सीन हम सब को लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है
दवाई भी कड़ाई भी
इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है
हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आयेंगे
इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुतबहुत धन्यवाद